क्लास में बच्चे डांस कर रहे हैं।

फोटो में तरबूज दिखाई दे रहे हैं।

ए_टी_एम मशीन दिखाई दे रही है उस--

होटल दिखाई दे रही है।

मशीन दिखाई दे रही है।

दुकान दिखाई दे रही है।

दो गाय दिखाई दे रही है।

होटल दिखाई दे रही है।

पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

गोदरेज दिखाई दे रही हे ।

फोटो में एक बैंक दिखाई--